यहाँ पे तरह-तरह के पेड़ और सजावट के चीज दिखें --

प्यारा लीची है ये बिहार का फेमस फल में से एक है ये मुज़फ्फर पुर के का --